ये एक कपड़ों की दुकान है जहां पर--

तीन बेड लगे हुए हैं और सारे सामान अस्त व्यस्त पड़े हैं।

सोफा टेबल भी लगा हुआ है।

योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे बच्चों के लिए यहां पर खिलौने रखे हुए हैं और--

जैसे की मैं देख पा रही हूं ये एक डांस क्लास है।

यह एक पंजाबी ढाबा है जिसे--

ये एक कपड़े की दुकान है।

यहां पे तीस से चालीस लोग योगा कर रहे है।

मैं देख पा रही हूं कि बहोत बड़ा सा तालाब है और--

बहोत जंगल भी है घना जंगल बहोत पेड़ पौधे है यहां पर।

दूर दूर से लोग देखने आते हैं दो पक्षी भी यहां पर--

कांच की बोतलें रखी हुई है।

बहोत सारे यहां घर भी हैं पीछे में--